ये जो आप सामने डायरी देख रहे हैं यह लक्ष्मी गणेश जी का जो आप देख रहे हैं ये ये डायरी होता है अकाउंटिंग के लिए दरअसल दोकान बिज़नेस के लिए जो है वो वो दीपावली के दिन ये बुक खरदा जाता है और सालों भर इसी में उधार --